और बिल्डिंग ग्रीन कलर में एक वाइट कलर में दो देखने को मिला है।

टेबल के नीचे कार्टून भी देखने मिल रहा है।

दुकान के ऊपर एम डॉट एम ऑप्टिकल लिखा हुआ है।

रूम में एसी भी लगाया हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक शॉप दिखने को मिला है शॉप के अंदर म्यूजिक स्पीकर भी रखा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे स्विमिंग पूल देखने को मिला है।